आपको समझ में आई जो लगे तो हम भिजवा देंगे बाकि मछली वाला भाड़ में जाये ।

तुम नई समझे हमरा बात तुमरे समझे में आवी कि करेला छे में रिकॉर्डिंग नहीं करेला हट्ट।

ई दाल रोटी खिलाई की कारणों है पागल रतन अंश --

पुरे खचम खच काटे फेंकी हुई इधर उधर --

और इसमें बहोत तरह की है भी इसमें बहोत सारे फूल लगे हुए हैं अच्छा बगीचा है नेचुरल है जो हमें बहोत पसंद आते हैं आपको तो बिल्कुल पसंद नहीं होगा क्योंकि आप सर्वर में रहे हुए हैं।

ये बोहत अच्छा मंदिर है यहां पे आप दर्शन करने आये अपने फॅमिली के साथ आये बोहोत अच्छा मंदिर है इस जगह पे है आपको --